ग्रीन गार्डन ऐसा लिखा हुआ है ये बहोत ही सुंदर गार्डन है ग्रीन गार्डन बहोत ही अच्छे अच्छे यहां पर पेड़ पौधे दिख रहे हैं।

कुछ छोटे डब्बो में कुछ बड़े डब्बो में अलग अलग रखे हुए हैं मेडिसिन --

बहुत अच्छे अच्छे यहां पर नाम लिखे हुए हैं रेड कलर से--

यहां पर बहोत ही सारे बैग्स पड़े हैं जिसके ऊपर दुल्हन की फोटो है जिसने एक ब्लाउज पेहेना है ग्रीन कलर का।

उसके आस पास कोई नहीं दिख रहा है हरियाली दिख रही है थोड़ी बहोत मिट्टी ही मिट्टी दिख रही है।

यहां पर बहोत ही सुंदर कलर किया गया है क्रीम एंड ब्राउन एंड मैरून कलर का बहोत ही अच्छा व्यू दिख रहा है यहां पर--